इसमें छट पर्व का द्रश्य दिखाया गया है एक नदी है और इसमें कई सारी महिलाएं हैं और इस एक अगर दो अगरबत्ती जलाए हुए हैं।

यह-यहां पर कई सारे बाइक लगा हुआ है और यह एक बैंक है जो भारतीय स्टेट बैंक है।

इसमें एक नाई है जो कुछो-कुछो किसी आदमी का बाल काट रहा है है और वह आदमी --

ब्लैक कलर की कुर्सी पर बैठे हुआ हैं एक इसमें एक कैलेंडर है जिसमें सरस्वती भगवान का मूर्ति लटका हुआ है फोटो --

उसमे एक मोबाइल बनाने वाला आदमी है जो मोबाइल बना रहा है।

और एक आदमी घेरा मारा हुआ है।

यहाँ एक कोई ढलाए वाला काम चल रहा है यहाँ पर स छह आदमी है और एक आदमी गमछा पहना हुआ है।